नील दुपट्टा की शॉप दिख रही है। यहा पे इस मे जो है। पिंक कलर का दुपट्टा है आगे ग्रीन है। ब्लू है ब्लैक है।

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। सामने से सफेद कलर की और उसमे बहुत सारी बालकोनीस है। के एक ग्रीन कलर का कपड़ा दिख रहा है खिड़की के बाहर से।

ये जो पिक्चर है यहाँ पे एक सोफ़ा है सोफ़े के पीछे सफेद और लाल रंग के गुलाब लगाए गए है साइड साइड्स मै बहुत सारे गुलाब है।

ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पे ये साड़ी की दुकान की है जहा पे औरतों के लिए साड़िया दस्तायाब होती है।

और सिडिया एक दो तीन चार पाँच छे सीडिया चड़नी है तो उसके बाद हम आगे पहुंच जाएंगे वहा पे ऑरेंज कलर का ये बोर्ड लगा के है आगे से बोर्ड पे --

यह रात को उठाई गई है यह पीक इसके अंदेर जो है टेंट है सफेद रंग का और साइड साइड्स मै पिंक कलर के है यहाँ पर नहीं दिख रही हमे।

यह भी एक अम्यूज़्मन्ट पार्क है आगे बोर्ड लगाया गया है बच्चो के लिए हाथी है पीछे दरकेटह है रेड कलर का फूटपाथ है।

इस इमेज मे एक शॉप दिखाई दे रही है जहा पे बच्चो की चीजे दिख रही है। छोटे छोटे कपड़े दिख रहे है। यहा पर आगे से रेड कलर के स्वेटर --

यह पार्क है नेशनल पार्क है जैसे यहा पर डिअर है एक दो तीन चार पाँच एक इसकी मा है और चार बच्चे है वहा पे इनका जो कलर है।

ये अंदर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमे एक आदमी की पिक्चर है और जो टेंट के अंदर है बाईकर्स दो लगाये गए है।

ये स शादी के लिए यहा पे सोफा रखा गया है यहा से दो बड़े बड़े फ्लावर पोट्स लगाए गए है पिछेसे दूल्हा और दुल्हन का नाम के इंगेजमेंट के लिए इन्होने सजाया --